और उ वै कु इलाज कन लग्युं और कमरा मा जी पिछाड़ी हम ते बहोत सारु सामान भी दिखेण लग्युं अगवाड़ी मा हम ते एक दरवाजा भी दिखेण लग्युं।

और यख जु छा सरिया छन बिछाईं और लाखड़ों का फट्टा भीन हम ते दिखेणा और किनारा बिटि कुछ लोग भिन दिखेणा जु कि अपड़ा अपड़ा काम पर लग्यां।

जों पर कि कुछ लोगन बैठ्यां अर भ्वाँ मा जी एक आदमी भी लेटियूं जैका --

ईं तस्वीर मा जी जु छा हम देख सक्दुं की यखम हम ते एक बड़ी सी इमारत दिखेणी और सबसे निस वाला फ़ो-फ्लोर पर हम ते बैंक दिखणे लग्युं जै पर एक नीलु रंग कु बोर्ड लग्युं।

और हम ते भोत सारा लोग भीन यखम दिखेण लग्यां और दिवार पर हम ते एक बड़ी सी घड़ी भी दिखेण लगीं और कुछ कैलेंडर भी दिखेणा।